यह आदमी हाथी के साथ सेल्फी घीचाया है जो यह हाथी और हाथी लोग मोटी होती है और यह आदमी हाथी के सूढ़ पर बैठ के फ़ोटो को खिचाया है और यह आदमी को अच्छा लगा तभी यह फ़ोटो इसने घीचाया है।